उनके हाथ में भाले हैं।

इसमें कुछ आदमी फल बेच रहे हैं।

पीछे एक रिक्शा भी खड़ी है।

इसमें कुछ स्टील का समान भी रखा हुआ है।

अलमारी भी रखी हुई है।

इस पर कुछ डिजाइन बना हुआ है।

एक पंखा लगा हुआ है।

इस फोटो में एक कमरा दिखाई पड़ रहा है।

दीवारों पर टेल लगी हुई हैं।

बराबर मे चित्र बने हुए हैं।

एक आदमी का पैर भी दिखाई दे रहा है।

एक टीन का डब्बा रखा हुआ है।

कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक स्टेज दिखाई दे रही है।

कुछ कुर्सी भी रखी हुई हैं।

एक कुर्सी भी रखी हुई है।

पीछे दीवार पर कुछ टैल भी लगी हुई है।

एक खंबा भी खड़ा है।

इस फोटो में एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें दो नाव है।

दोनों तरफ ग्रिल लगी हुई है।

पानी का पाइप भी दिखाई दे रहा है।

कुछ आदमी भी खड़े हैं।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

उसके बराबर में एक छोटा दरवाजा है।

कितने ही आदमी भी बैठे हुए हैं।

दीवार पर टाइल भी लगी हुई है।